एक थैला भी लटका हुआ है दीवाल पर सफेद कलर पुता हुआ है।

यहां पर एक गेट भी लगा हुआ है यहां पर एक खिड़की भी बना हुआ है।

यह एक मार्केट का फोटो दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

नीचे कोई बड़े वाले पेड़ भी लगे हुए दिख रहे और सभी घरों की ईंटो की दिखाई दे रही है।

एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसके दीवाल पर वॉलपेपर लगा हुआ है।

यह एक खेत का फोटो है जिसमें एक बर्फ की मशीन लगी हुई है।

इसमें पाइप भी पाइप दिखाई दे रहे हैं नीचे टंकी भी बनी हुई दिख रही है।

और पेड़ भी लगे हुए है और एक पाइप भी दिखरा--

एक यह एक ऑफिस का फोटो है जिसमें बहोत सारी टेबले डली हुई है।